calc में basic data manipulation पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि निम्न कैसे करें:
calc में कुछ basic formula का उपयोग
columns से sort और data filter
यह tutorial ubuntu linux os वर्जन 1804 और libreoffice suite वर्जन 635 का उपयोग करके recorded किया गया है
formula क्या है
formula एक समीकरण है जिसमें परिणाम प्राप्त करने के लिए numbers और variables का उपयोग किया जाता है
variables cell locations हैं जो समीकरण के लिए आवश्यक data रखते हैं
basic arithmetic operations
यह है addition subtraction multiplication और division
personalfinancetracker ods file खोलें
heading cost में निर्दिष्ट सभी खर्चे का योग करें
sum miscellaneous के ठीक नीचे sum total type करेंगे
फिर cell a8 पर click करें और serial number में 7 type करें
अब cell c8 पर click करें यह वह है जहां sum costs का कुल योग प्रदर्शित करना चाहते हैं
is equal to sum और braces में जोड़े जाने वाले columns की range type करें जो c3 colon c7 है
अब enter दबाएं
ध्यान दें कि cost की सभी राशि को योग हो गया है और कुल योग cell c8 में प्रदर्शित है
अब सीखते हैं कि calc में subtraction कैसे करें
मानिए कि हम house rent और electricity bill की कीमत घटाना चाहते हैं
हम इसे cell c10 में प्रदर्शित करेंगे
so click on अतः cell c10 पर click करें और निम्न type करें
enter दबाएं cell c10 में मान पर ध्यान दें
यह c3 और c4 का घटाया मान दर्शाता है
इसीतरह भिन्न cells में data divide और multiply किया जा सकता हैं
cell c11 पर click करें और is equal to c5 asterix c6 type करें और enter दबाएं
multiplication का उत्तर cell c11 में दर्शाया गया है
cell c12 पर click करें और is equal to c3 forward slash c6 type करें और enter दबाएं
डिवीजन का उत्तर cell c12 में दर्शाया गया है
division multiplication और subtraction के बदलावों को अन्डू करते हैं जो हमने किए हैं
ऐसा करने के लिए ctrl + z कीज़ तीन बार दबाएं
spreadsheet में अन्य basic operation है numbers का औसत ज्ञात करना देखते हैं कि यह कैसे करते हैं
cell b9 में heading average type करें
यहां हम कुल कीमत का औसत प्रदर्शित करना चाहते हैं
अब cell c9 पर click करें
और is equal to average और braces में c3 colon c7 type करें एंटर दबाएं
हम देखते हैं कि cost column का औसत cell में प्रदर्शित हो जाता है
ctrl + z कीज़ दबाकर बदलावों को अन्डू करें
उसी तरह से हम horizontal row में भी elements का औसत ज्ञात कर सकते हैं
हम अन्य formulae और operators के बारे में इस श्रृंखला में बाद में सीखेंगे
अब सीखते हैं कि calc spreadsheet में data को sort कैसे करें
sorting spreadsheet में rows और columns को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है
sorting हमें data को अधिक प्रभावी ढंग से विश्लेषण और दृष्टिगोचर बनाने के लिए मदद करता है
यह इसे पूर्ण sheet से एक item ज्ञात करने और सुधारने के लिए आसान बनाता है
हम तीन मानदंडों का उपयोग करके data को sort कर सकते हैं जो तब एक के बाद एक लागू होते हैं
sorting को पूर्ण sheet या cells की range पर लागू किया जा सकता है
data आमतौर पर वास्तविक मानों के आधार पर सॉर्ट किया data है उदहरणस्वरूप आरोही अवरोही alphabetic बाएँ से दाएँ सबसे पुराना से नवीनतम आदि
हम heading costs के data को आरोही क्रम में sort करेंगे
अब बायां mouse button पकड़कर रखें cells c1 से c7 तक चुनें
यह cells की range चुनता है जिसे हमें sort करना चाहते हैं
standard toolbar पर जाएं यहां हम तीन भिन्न sorting आइकन देख सकते हैं
sort ascending icon पर click करें
sort range dialog box प्रदर्शित होता है
current selection button पर click करें
ध्यान दें कि चयनित cells के numbers अब आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए हैं
sort descending icon पर click करें
sort rangeडायलॉग box में current selection button पर click करें
ध्यान दें कि cells के numbers अब अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए हैं
ctrl + z कीज़ दो बार दबाकर इन बदलावों को अन्डू करें
numbers उनके मूल cells में वापस चले गए हैं
data sort करने पर अधिक नियत्रंण के लिए sort icon पर click करें
वैकल्पिक रूप से हम menu bar पर जाकर data पर click कर सकते हैं फिर menu से sort पर click कर सकते हैं
sort range dialog box में फिर से एक बार current selection पर click करें
इस सयम sort criteria और options named दो tabs के साथ अन्य sort dialog box प्रदर्शित होता है
sort criteria टैब default रूप से चयनित होता है नीचे हम तीन sort keys देख सकते हैं
sort key 1 में ड्रापडाउन में cost चुनें
फिर इसके ठीक आगे ascending विकल्प पर click करें
अवरोही क्रम में sort करने के लिए descending विकल्प पर click करें मैं ascending विकल्प चुनूंगी
अब निचले दाएं कोने पर ok button पर click करें
हम देखते हैं कि column cost आरोही क्रम में सॉर्ट हो गया है
ctrl + z कीज़ दबाकर इन बदलावों को अन्डू करें
कई columns भी एक साथ सॉर्ट किए जा सकते हैं
ऐसा करने के लिए पहले कई columns चुनें और फिर sort विकल्प लागू करें मैं आपके लिए यह दिखाऊंगी
मानिए कि हम serial numbers items साथ ही साथ cost को sort करना चाहते हैं
अतः पहले यहां दिखाए गए अनुसार सभी तीन columns sn items और cost चुनें
अब menu bar पर जाएं और data पर click करें menu में sort पर click करें
sort dialog box खुलता है
sort criteria टैब में sort key 1 ड्रापडाउन में cost चुनें
फिर sort key 2 ड्रापडाउन में sn चुनें
और sort key 3 ड्रापडाउन में items चुनें
पहले दो sort विकल्पों में descending पर click करें
तीसरे sort विकल्प में ascending पर click करें
फिर ok button पर click करें
बदलावों पर ध्यान दें हम देखते हैं कि सभी कॉलम्स चयनित क्रम में सॉर्ट हो गए हैं
इन बदलावों को अन्डू करें
अब सीखते हैं कि calc में data filter कैसे करें
filter conditions की सूची होती है जिसे प्रदर्शित होने के लिए प्रत्येक प्रविष्टि को पूरा करना है
मैं इस विशेषता को समझाऊंगी
filter लागू करने के लिए cell पर उदाहरणस्वरूप items named cell पर click करें
standard toolbar में auto filter icon पर click करें
वैकल्पिक रूप से आप menu bar पर जा सकते हैं और data पर click कर सकते हैं फिर menu में auto filter पर click करें
हम देखते हैं कि heading items पर ड्रापडाउन arrow प्रदर्शित होता है
ड्रापडाउन arrow पर click करें
filter popअप box खुलता है
अब मानिए कि हम केवल electricity bill data प्रदर्शित करना चाहते हैं
तो पहले all विकल्प अनचेक करें
फिर electricity bill विकल्प check करें और ok button पर click करें
केवल electricity bill से संबंधित data sheet में प्रदर्शित होता है बाकी आइटम्स छंट जाते हैं
फिर से पूरा data देखने के लिए cell items पर dropdown arrow पर click करें
all विकल्प को check करें
सुनिश्चित कर लें कि सभी headings checked हैं और फिर ok button पर click करें
हम अब पूरा data देखने में सक्षम हैं जो हमारे पास sheet में है
calc में अन्य filters हैं जिन्हें हम इस श्रृंखला के बाद के tutorials में समझेंगे
file को सेव और बंद करें
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा:
नियतकार्य के रूप में:
spreadsheetpractice ods sheet खोलें
salary column को आरोही क्रम में sort करें
name column को filter करें और राहुल का data प्रदर्शित करें
बदलावों को अन्डू करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
हम spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपनी समयबद्ध queries को इस forum में post करें
spoken tutorial project mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूं धन्यवाद